यहां पे हमको कोई क्लास के बच्चे दिख रहे हैं जो अपनी--

हमको ये किसी फाल की दुकान दिख रही है।

और मस्त सा दही रखा हुआ है कुछ लाल कलर का गुलाब जैसा कुछ हमें दिख रहा है।

रेल की पटरी एवं उसके कुछ दिखाई दे रहे हैं प्रयोग करने पे--

अप डाउन करते हैं और हम लोग यहां पे जॉब करते हैं बहुत ही बेहतरीन वाली।

टोटियां मतलब जिससे ना पानी निकलता है और--

एक मतलब औरत अपने हाथ में कुछ सफेद कलर का ली हुई है हमें--

हमें देखने को पाया जा रहा है जिसमें कि एक ग्राउंड है।

और शुक्ला हमारे कृष्णा जी को--

है सौ इक्यावन पर बामन तिरपन--

हम जो पानी देख पा रहे है जिसमें कि--

जो तलवार है उसको भमा रही है खूब तेज भमा रही हैं अब हम क्या बोले वो रानी लक्ष्मीबाई हैं।

एक कंकाल का रूप धारण करे हुए दिख रहा है एक कंकाल के रूप में हमें जो हमसे होना चाहिए हमें वो करना चाहिए।

बेड में दो तकिये हैं एक कंबल है कंबल में हमें कंबल दिख रहा है कंबल से कंबल --